और सामने एक इंसान भी और बहोत सारे इंसानों के सिर के ऊपर कपड़े हैं।

और बहोत सारे लंबे लंबे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और बहोत सारे बालकनी भी दिखाई दे रहा है।

और एक काले रंग का पोर्श भी दिखाई दे रहा है और प्लास्टिक का छत बनाया हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर बहोत सारे पौधे--

इस तस्वीर पर मुझे बहुत सारे रंग के डिब्बे और कुछ बॉक्स और रैक --

और तस्वीरें भी दिख रहा है और एक सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिख रहा है और सफेद रंग का फैन भी दिख रहा है।

स्विच बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और छोटे से गमले पर हरे रंग का पत्ता का पौधा भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर पर मुझे हरा भरा पहाड़ और खुला आसमान--

इस तस्वीर पर मुझे दो दरवाजा और आईना और टेप और फ्लोर और--

और स्कूटी और कुछ इंसान है और सामने पर ऐसी और बहुत सारे बालकनी और सामने पर कुछ पौधे और सड़क दिख रहा है।

और बहुत सारे किताबें भी दिख रहा है और एक ग्लोब भी दिख रहा है और एक पेन भी दिखाई दे रहा है और बहुत सारे टेबल भी दिखाई दे रहा है।